इ मैरिज हॉल ह सजावल गइल बा कटरैन बा खूब बढ़िया से सजावल गइल बा फूल वूल लटकावल गइल बा लाइट जरता हरा पीरा लाल सफेद काला सब फूल बान सं सब --